यहाँ सामने एक पाइप का एक कुछ बना हुआ है और यहाँ एग ए मैदान है और सामने--

यहाँ सामने एक औरत दिखाई दे रही है जो साड़ी पहन कर कहीं जा रही है। सामने अच्छा मैदान भी दिखाई दे रहा है जिस पर घास उगी हुई है।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

यहाँ बोहोत सारी बर्फ दिखाई दे रही है जिस पर बोहोत सारे व्यक्ति स्केटिंग कर रहे हैं और सामने बोहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक घर दिखाई दे रहा है जो पीले कलर से रंगा हुआ है और सामने एक और घर दिखाई दे रहा है जो भी पीले कलर से रंगा हुआ है।

और सामने काफी पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। पेड़-पौधे का कला हरा है और यह किसी मैदान पर इस पर खड़े हुए हैं।

यहाँ सामने बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और यहाँ सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और उस पर एक व्यक्ति बैठा है और सामने एक ऑटो भी दिखाई दे रही है।

वहाँ सामने एक घर बना हुआ है जिसके बगल में एक सीढ़ी भी रखी हुई है और उस के बगल में एक मोटरसाइकिल भी रखी हुई है।